जिसपे सफेद रंग की लाइनें लगी हुई है साथ में एक पड़ा हुआ है।

सब कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी का रंग काला है पीछे प्लेन फ्लेक्स लगा हुआ है प्लेन फ्लेक्स का रंग नीला सफेद और सुर्ख है।

नीचे कलीन बिछी है कलीन में काफी रंग है जिसमें माल्टा--

सफेद पेज सफा लगा हुआ है ।

एक दरख्त पे वाइट फूल है एक नीली टोकरी पड़ी हुई है ।

यहां एक आदमी चाय का ठेला लगाया हुआ है ठेले के ऊपर--

रंग का सूट डाला हुआ है एक और जिसने नीली रंग की साड़ी पहन रखी है एक आदमी जिसने सफेद लिवाज पहना हुआ है और रेड कलर की टोपी पहन रखी है।

साथ में हिन्दी रंग का प्लेन फ्लेक्स लगा हुआ है यहां बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं पौधे हैं यहां एक दो पिलर हैं जो के सफेद रंग --

यहां ऊपर एक रेड कलर का पेनाफ्लेक्स लगा जिस पे कोका कोला लिखा हुआ है ऊपर असमान --

पे एक आदमी एक बच्ची और एक औरत की तस्वीर बनी हुई है।